ये एक ट्रक खड़ा है और कुछ बाइक खड़ी हैं।

के छत पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

यह जिम सेंटर है इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा है।

और एक पोस्टर है जिसपे बॉडी बिल्डर का चित्र उतर रहा है।

यह एक यात्री प्रतिक्षाल्य है।

महादेव चाट भंडार के नाम से दुकान लगी है।

और कार को सही करने के लिए टूल बैक्स रखा है टंकी रखी है।

और एक बेंच रखी है बेंच पे सामान रखा है।

यह एक शान्ति मॉडर्न एकेडमी के नाम से प्रतियोगिता करा रहे हैं।

और एक काउंटर है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक बहुत प्यारी नर्सरी है।

बैंक के बाहर दो व्यक्ति खड़े हैं।

यह कार्यालय सेवा प्रबंध उत्तर प्रदेश परिवहन सहारनपुर है।

और इसके बाहर एक बिजली का लवे का खंभा खड़ा है।

यह एक बेबी दा ढाबा है।

और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।

और इसके बराबर में एक येलो कलर का ए_टी_एम है।

और सभी ने हाथ ऊपर कर रखे हैं।

और ट्रक के ऊपर एक लोहे का बहोतबड़ा कैंटर रखा हुआ है।

और तीन महिलाएं एक बच्चा है।

सभी टीचरों ने माक्स लगा रखा है।

और एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि मशीन से कपड़ों को काट रहा है।

इस ऑफिस में शीशों से बना हुआ है।

यह एक ऑफिस है जिसके अंदर एक व्यक्ति फोन चला रहा है।

और इसके अंदर बहोत सारे पेड़ है।

और इसपे कुछ दीवार पे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए है।

और चॉकलेट कलर भी है दीवार पे पीछे।

जिसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सामान रखा हुआ है।